ब्राउन कलर का कुछ बन लगा है ग्रीन कलर का ब्लू कलर का केरेट है। चार पाँच टेबल है।

कुर्सी लगा है दो चार टेबल भी है एक टेबल राइट साइड है एक टेबल लफ़्ट साइड़ है और लाइट लगा हैं ।

यह एक मंदिर है जिसमें माता रानी का मूर्ति है आरती का थाली है जिसमें दीया जल रहा है फूल है घंटि है गिला--

सा है अब कुर्सी भी है हाँथ मे एक ऑरेंज कलर गमछा है और रेड कलर की चुन्नी का सामने पर्दा टाइप का सजाये हुए हैं और फूल भी टांगा है।

पोस्टर टंगा है। नगर पालिका परिषद लिखा हुआ है। का है। योधान करने का सामान भी लिखा है इसमे सायाम चार बजे से रात के आठ बजे तक।

दो इसमें दो मिरर लगे थे इसके हैंडल दिख रहा है और यहा यहा पे बहुत ही बड़ा गेट लगा है और जो जो ब्लैक कलर का है टाइल्स भी लगा है।